और उसके नीचे जस्ट दो नंबर दिए हुए हैं जिनपर आप कॉल कर सकते है।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

सामने से एक येलो कलर की लाइट जल रही है।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

उस कंप्यूटर क्लासेस में बहुत अच्छी है और उसका नाम है सफल कंप्यू--

उधर एसी लैपटॉप और ये सब रिपेयर होता है।

बिस्किट्स अनाज और ऑयल रखा हुआ है।

उस गेट के अंदर एन्टर होते ही एक होटल हैं।

इस चित्र में हमें साफ-साफ नज़र आ रहा है कि यह एक --

यह चित्र हमारी नेचर को दिखाने के लिए बताया--

शायद तक वह किसी ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं।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

और वहां वहां का मौसम बहुत अच्छा है।

और उन पेड़ो पर खूब सारे नारियल भी लगे हुए हैं।

और यहां पर एक चॉकलेट आइसक्रीम और मटका कुल्फी रखी हैं।